और लोग यहाँ पे चाय नास्ता कर रहे हैं।

ये पासबुक सेवा केंद्र है पहाड़ की फोटो है।

यह एक फिश मार्केट मतलब मछली बाजार की फोटो है|

ये एक थिएटर की फोटो है जो पूरा खाली है।